हेलो गाइज ये एक जंगल का फोटो लग रहा हैँ जिसमे बहुत सारे हरे भरे पेड़ पौधे नज़र आ रहे हैँ।

और काली काली अ इसमें भी इसको बनाया गया है और रंगबिरंगी रंगबिरंगी इसे सजाया गया है जो की काफ़ी सुन्दर लग रही है दिखने में।

यहाँ पर बहुत सारे जीना टाइप की नजर आ रहे हैं गाइज राउंड में पूरा गोल टाइप का दिख रहा है और कुछ छर वड़ भी नजर आ रहे है सरिया वगैरा जो खरा है |

यहां पे एक बैंक नजर आ रहा है गाइज और उसके ऊपर जो पोस्टर लगा हुआ है बिल्कुल ब्लू कलर का है और और यहां पर बीच से रास्ता जाने के लिए है वहां पर ग्रिल लगा हुआ है बिल्कुल वो भी ब्लू है।

ये किसी रूम के अंदर की फोटो है गाइस जिसमें एक लाइट नजर आ रहा है। दो पंखा नजर आ रहा है। एक ए.सी. नजर आ रहा है और कुछ केबिन जैसा बना हुआ है।

और उसका जो दीवार है। बिल्कुल व्हाइट कलर का किया गया है। बॉर्डर बिल्कुल डीप ब्लू में किया गया है > और सामने --

यह बहुत बड़ी भवन नजर आ रही है गाईज जो भी जोकि काफी अच्छा नजर आ रहा है।

एक बड़ी बिल्डिंग नजर आ रही है। जिसका कलर कुछ हल्का पिंक और व्हाइट में है। दोनों काम्बनैशन मैच किया गया है। और यहाँ पर कुछ पोस्टर भी नजर आ रहे हैं।